जो पेशंट भी है जो इलाज करते हुए डॉक्टर नज़र आ रहे हैं जो बेहद अच्छे से इलाज करवा रहे हैं।

आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं।

लग रहा है कोई शादी विवाह का समारोह हो रहा है जो बहोत ही अच्छे से डेकोरेशन किया गया हैं।

कोई एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिससे लग रहा है कोई सरकारी भवन है जो यहाँ पे लिखे गए शासकीय --

जो ये चारों तरफ से हरे-भरे से भरे हुए हैं और पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं हरे-भरे जो बेहद ही अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है हरे-भरे पेड़-पौधे का--